जो अ सरिया बीन से बांध रहे है।

कथई रंग का शर्ट पहन रखा है और एक हेलमेट भी नजर आ रहा है बाइक के उपर जो लाल रंग का है।

दीवारों का रंग सफेद है। खिड़की में पर्दा लगा है। तीन काले रंग की कुर्सियां भी हैं।

अब डार्क ब्राउन कलर का गेट है। उसके ऊपर एक बोर्ड लगा है।

डार्क हरे रंग मे भी दिखाई दे रहा हैं। उन पेड़ों के --

दिए गए इमेज में हमें रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है।

और एक तरफ अ छत लगी है खंभा भी दिखाई दे --

दिए गए इमेज में चार लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने किसी ने ब्लैक और --

और उसमें लिखा हुआ है इंडियन बैंक । आपका अपना बैंक मुजफ्फर नगर शाखा है।

दिए गए इमेज में पक्की सड़क नजर आ रही है। उसके किनारे --

दिए गए इमेज में बहोत ही सुंदर व्यू नजर आ रहा है जिसमें कई सारे लोग हैं।

और काफी लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने कई रंगों के कप --

पीछे ग्रीन कलर का मैंप लगा है दीवार में और उसके ऊपर हुडिंग लगी हुई है ई-रिक्शा ऑटो की।

सामने दिए गए इमेज में एक बोहोत बड़ा बड़ी अ --

दिए गए इमेज़ में बच्चों के कई सारे झूले नजर आ रहे हैं जिसमें कई सारे बच्चे --

दीवारों में कई सारे एड अ चिपका --

मैहरून कलर में नजर आ रहा है और उसके ऊपर में एक बोर्ड लिखा हुआ है केंद्रीय केंद्रीय विद्यालय।